एक ब्लैक कलर का और एक औरत खड़ी है और एक बच्चे के लिए हुई है और सामने पेड़ दिख रहा है।

सामने गार्ड खड़ा है उसके साथ एक आदमी खड़ा है गार्ड मास्क लगाया हुआ है।

सामने कुछ लोग दिख रहे है जिन्होंने अपने सर पे हैलमेट लगाई हैं।